चाय की दुकान दिख रही है चाय लोग पी नहीं रहे हैं पर देख भी नहीं रहे हैं।

यह एक नदी दिख रही है झील टाइप यहाँ पर कुछ अ आणि हानि कुछ अ यहाँ पर चद्दर सेट दिख रहा है वाइट कलर का घर भी दिख रहा है और येलो क्रीम कलर का भी घर यहाँ पर दिख रहा है।